अपना नाम भी लगवाते हैं यहाँ पे पैसा जमा किया जाता है और निकला भी जाता है।

फोटो जरूर लेते हैं अपने मोबाइल पे क्यूंकि इनकी सुंदरता ही ऐसी है बहुत ही अच्छे है हर किसी को एक बार ये घर को देखना चाहिए।

यह एक ए.टी.एम. है इस ए.टी.एम. का नाम कानरा बैंक है और कानरा बैंक का ए.टी.एम. है इसमें चौबीसो घंटा निकासी किया जाता है ।

यह एक होटल है यह होटल बहुत ही महंगा है लेकिन इस होटल में बहुत ही ज्यादा फैसिलिटी दिया गया है यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है और पार्क भी बनाया गया है।

यह एक तलाब है इस तलाब के किनारे अलग-अलग तरह का डिज़ाइन बनाया गया है ताकि पानी का बहाव स्लो हो जाए और स्लो हो के इस तलाब में जाए और तलाब --

ये एक सैलून है और इस सैलून में अलग-अलग डिज़ाइन के बाल काटा जाता है और बहुत ही कम रेट में अच्छे-अच्छे फेशन --

यहाँ पे हर रोज बहुत सारे कपल आके फोटो लेते हैं और अपने प्रोफाइल में लगाते है क्योंकि बहुत ही सुन्दर और अच्छे दृश्य दिखते हैं यहाँ से।